और बहुत सारे ट्री भी दिख रहें हैं और एक सूखे से पेड़ पर एक चिड़ियां बैठी हुई है।

और इस टोकरी में कुछ कच्चे पक्के टमाटर भी है और भिंडी भी है हरी मिर्च भी है और प्याज भी है।

इस इमेज में एक रिसोर्ट है और रिसोर्ट में एक स्वीमिंग पूल है।